बगल में एक पोस्टर लगाया हुआ है पीछे बहुत सारे टेंट लगाया हुआ है ब्लू कलर का और पर्पल वाइट कलर का।

अंदर में रैक बनाया हुआ है छोटा छोटा उसमें बहोत सारे सामान रखे हुए हैं।

उसमें बहोत सारे सामान रखे हुए हैं कुछ मैं डब्बा रखा हुआ है तो कुछ में कुछ नहीं रखा हुआ--

बगल में टेबल है टेबल पे एक पुरुष बैठा हुआ है वो भी वाइट कलर का गंजी पहनकर और लुंगी पहनकर हाथ में घड़ी पहना है एक और महिलाएं जो साड़ी पहनी हुई है।

और जो रा रैक लोहे का बनाया हुआ है टूटी फूटी सामान रखा हुआ है।

ऊपर करकट से छाया हुआ है और अंदर में कुछ लोग बैठे हुए हैं।

बगल में एक और गाड़ी है और उसके बगल में जीप लगाया हुआ --

बहोत सारे सामान रखे हुए हैं छोटे छोटे डब्बा में पैक करके--

बगल में बहुत सारे टेंपो है बगल में दुकान है दुकान में बहुत सारे पुतले खड़े हैं पोस्टर लगाया हुआ है।

बगल में बहुत सारे लोग हैं और अंदर में एक घड़ी का दृश्य दिख रहा है।

लाइट बहुत सारा जल रहा है रंग बिरंगे पिंक येलो ब्लू और बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं।

सामने माता जी का फोटो लगाया हुआ है और मोर पंख है बहुत सारी लाइटे जल रही है।

ऊपर में एक पोस्टर लगाया हुआ है उस पे बहुत सारा दृश्य दिख रहा है।

बगल में बहुत सारे गिट्टी फेंका हुआ है बालू फेंक हुआ है।

पार्क बनाया हुआ है पीछे में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं चारों तरफ।

बाहर में एक गाड़ी लगाया हुआ है स्कूटी लगाया हुआ है बुलेट लगाया हुआ है और ऊपर में एक और पोस्टर है।

नीचे फ्रिज रखा हुआ है फ्रिज में बहोत सारे जूस रखे हुए है एक आदमी खडा़ है।

चारों तरफ पेड़ पौधा लगाया हुआ है बहुत सारा और ऊपर में टंकी बैठाया हुआ है।

नीचे बहोत सारे बोतल रखे हुए हैं और सामान रखे हुए हैं काउंटर के पास।

उस पर लातेहार लिखा हुआ है बगल में पेड़ पौधे लगाए हुआ है।

बहुत सारे नीचे में लाइट लगाया हुए है रंग बिरंगे लाइट है येलो है ब्लू है पिंक है और कलरफुल फ्लावर लगाए हुए है।

पोस्टर लगाया हुआ है अंदर में उसपे वेलकम लिखा हुआ है।